सामने हमे एक पौधों और फूलो की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर एक आदमी बीच में खड़ा है और सामने की ओर एक लाल कलर की कुर्सी भी रखी हुई है।

और ए पर इस खंडहर में कई सारे दरवाजे बने हुए हैं और पीछे की ओर कुछ पेड़-पौधे भी लगे हैं।

एक आदमी दूसरे आदमी का बाल कट कर रहा है सैलून मे कई सारी चीजें रखी हुई है और बाहर की ओर एक गाड़ी भी रखी दिखाई दे रही है।

और किनारे-किनारे कई सारे कार सर्विसिंग की दुकाने बनी हुई हैं और सामने की ओर कार बनाने वाली कई सारे समान दिखाई दे रहे हैं।

सामने हमें एक बड़ा-सा पोस्ट ऑफिस का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारो में और भी कई सारे पोस्टर लगे हुए है और --

सामने हमें एक बहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है। जिससे सफेद कलर से पेंट किया गया है और दीवार में तीन पोस्टर चिपके हुए हैं और ऊपर की और कई लाइटे लगी हुई हैं।